बड़ा सा पानी का तलाब है जिसके किनारो पर आसपास हरियाली है कुछ भूमी सुखी हुई है पत्तियों का रंग--

हरा है एक दो मंजिला घर भी बने हुए है बिजली के खंबे है।

कुछ मूर्तियां भी वहाँ पर पेंटिंगस रखी हुई है जो देखने मे बहुत ही खूबसूरत लग रही --

इनमी लगाई हुई है काले रंग की वायरस बिछी हुई है बिजली की चारो तरफ हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है आसमान--

जिम में एक आदमी वर्कआउट कर रहा है जिसने अपने पैरों से मशीन को धकेल रहा है।

पठान लिखा हुआ है और चारों तरफ उसके मगर लगे हुए हैं बिल्डिंग के किनारे बहुत सारे --

रूम में चारों तरफ बच्चे लाइन से बैठे हुए है जिनमें लड़के और लड़कियां है लड़कियों ने फ्रॉक पहनी हुई है।

बड़े से बागीचे में चारों तरफ पत्ता गोभी लगी हुई है जिनके पत्ते बहुत ही सुंदर कमल की फूलों की तरह खिले --

चारों तरफ हरियाली है गमलो में बहुत सारे सुंदर फूल लगे हुए है जो कि पिंक और सफेद रंग के है आसपास हरियाली है दो तीन मंजिला इमारत--

नीले और सफेद रंग का है जो की बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हरियाली में --

आसपास की भूमि कच्ची है और प्लेन की हुई हैं।